पीछे के पर्दे जो नीला कलर का है और कार्पेट जो ग्रीन कलर का है।

यहां चेयर है और एक मिल्टन का स्टील वाला बोतल भी है।

ये एक कपड़े की दुकान है।

शॉप और ये कैफे पिंक कलर से पेंटेड है।

उससे पहले हमें एक फ़िल्टर दिखाई दे रहा है।

ये एक डिपार्टमेंटल स्टोर है रोइंग का जिसका नाम हिल मार्ट है।

है फूल पोट है और दो डस्टबिन है ब्लू और नीला कलर ग्रीन और नीला कलर का और जिसके अंदर आदमी है।

ऑटो के पीछे एक बहुत बड़ा दीवार जैसा आंखों से जो मुझे गेट लग रहा है जो रेड कलर का है।

ये एक स्कूल की फोटो लग रही है जो दूर से खींची हुई है और एक बड़ा सा ग्राउंड भी दिख रहा है।

ये एक गुफ़ा है जिस पर तीन लोग घुस रहे हैं उसमें से एक व्यक्ति अपने हाथ में फोन लेकर खड़ा हुआ है।

सामने एक पत्थर भी दिख रहा है।

ये फोटो मुझे एक चर्च का लग रहा है क्योंकि ऊपर पर एक बहुत बड़ा सा क्रॉस है।